जिसमें मूर्ति का रंग ब्लैक कलर का दिखाई दे रहे हैं और कुछ कपड़े पे पीले-पीले जैसे कलर जैसा दिखाई दे रहा है।

कुछ कुर्सियाँ रखी हुई नजर आ रही हैं जिसके भीं फैन एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है नजर आ रहा है यहाँ।